पर एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू ग्रीन पर्पल दिखाई दे रहा हैं।

आसमान का कलर ब्लू पर्पल ग्रे दिखाई दे रहा है ओर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

यहा पर असामान का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और कई सारे पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रीन ब्राउन दिखाई दे रहा है और कुछ घर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ कप और स्पून दिखाई दे रही है ये यहाँ पर एक की दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसके दिवारों का कलर पिंक ग्रे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कई सारे सोफे दिखाई दे रहे है जिन--

इनका कलर सिल्वर ब्राउन ग्रीन पिंक अ ब्लू येलो ऑरेंज दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही यहाँ पर कई सारा फर्नीचर दिखाई दे रहा है और कई सारी किताबें दिखाई दे रही है फर्नीचर का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है और कुछ--